इस चित्र में सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें ऊपर की ओर लोहे की ग्रिल --

दीवारो पर अलग अलग तरह के पेंट किए हुए हैं।

इस चित्र में एक व्यक्ति अपनी सेल्फ़ी ले रहा है।

इसके पास एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

उसके ऊपर कंप्यूटर भी रखे हुए है।

बहुत से बोर्ड भी लगे हुए हैं और दुकान के सामने एक बाइक और पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यह एक खाद्य उद्योग की दुकान है।

अंदर की ओर एक कुर्सी भी रखी हुई है।

गमले भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

दुकान के अंदर खाने का सामान रखा हुआ है।

और इसमे कुछ फूल भी लगे हुए हैं।

कुछ तकिया भी रखे हुए हैं।

और कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।